इसके ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है जो स्वामी विवेकानंद जी की है यहाँ पर पेड़ - पौधे दिखाई दे रहे हैं हरयाली हरयाली दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है जो बिल्डिंग है वो रेड कलर की है उसकी बोहोत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है जो रेड कलर्स हैं।

ये एक रोड की फोटो है जिसके आस पास बोहोत सारे घर बने हुए हैं ये रात की समय है इसलिए लाइट के उजाले दिखाई दे रहे हैं कुछ ब्लू कलर के कुछ खम्बे दिखाई दे रहे हैं कुछ केन्डी कलर के--

अ-ब लाइट के बायर भी दिखाई दे रहे है एक छोटा सा पांडाल भी दिखाई दे रहा है कुछ इसान भी दिखाई दे रहे है मिट्टी लाल कलर की है यहाँ पेड़ पौधे भी दिख--

दुब घास भी लगी हुई है ये रात्रि का समय है जो की लाइट की वजह से बोहोत सुन्दर यहाँ पे लाइट लैंप जो दिख रहे हैं वो बोहोत सुन्दर --